ये एक मंदिर का दृश्य है।

टीशर्ट है शर्ट है टोपी है लाल रंग का पीला रंग का ब्लू रंग का।

एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट पहन के खड़ा है जींस पहना है।

उसमें जूस रखा हुआ है आइसक्रीम रखा हुआ है।

ये एक स्कूल के फील्ड का दृश्य है जिसमें बच्चे लाल और पीला पैंट शर्ट पहन के बुक पकड़ के खड़े हैं।

इस दृश्य में धनिया रखा हुआ है लौकी रखा हुआ है फूलगोभी रखा हुआ है टमाटर रखा हुआ है।

सामने कुर्सी है इधर ढकनी है नीचे बांस का झाड़ू है।

सुदर्शन ग्रेनाइट भी लिखा हुआ है यमाहा लिखा हुआ है ।

इधर बांस रक्खा हुआ है।